कुछ फूलों की सजावट नजर आ रही है।

हर कलर के कपड़े दिख रहे हैं।

कुछ पन्नियों में सामान रखा हुआ है।

रखे हुए हैं कुछ रखी हुई है।

सफेद और ब्लू कलर का सामान रखा--

कंप्यूटर पे बैठकर काम कर रहा है।